यह घर काफ़ी बड़ा है इस घर में एक बैनर है जिसमें पारस मोटर्स लिखा हुआ है यह गाड़ी का शोरूम है इस घर के गेट को गेट में शीशा लगा हुआ है यहाँ बहुत से बाइक खड़े हैं यह बाइक कई कलर में हैं।

ग्राउंड भी है यहा ग्राउंड तार की बनी है एक तरफ ग्राउंड नीचे की बनी है इस ग्राउंड के बहार बड़े बड़े पेड़ भी है |

दुकान है यह दुकान काफी बड़ा है इस दुकान में एल.जी. कंपनी के सभी सामान बक-बिकते है यहाँ पर टी.वी. अम एल.सी.डी. सभी सभी एल.जी. कंपनी के सभी सामान बेचे जाते है यह दुकान सफेद कलर से पेंट किया गया है।

इलेक्ट्रॉनिक दुकान है | इस दुकान के में बैनर है | इस मधुर वाणी पुरानी बजार लाखिसराए लिखा है | यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक के सभी सामान मिक मिलते है यहाँ पंखा मिलता है यहाँ इलेक्ट्रॉनिक के सभी सामान उपलब्ध है ।